आप देख सकते हो ये एक मोबाइल कवर की दुकान है।

और ऊपर साइडों में आप देख सकते हो रेलिंग भी लगी हुई है।

आप देख सकते हो काफी कच्चा रास्ता है जो कि नीचे ईंट गड़े हुए हैं।

और आप उसी के नीचे देख सकते हैं आईडीबी आई बैंक का बोर्ड भी लिखा हुआ है।

आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत नजारा है।

क्योंकि अंदर का नजारा थोड़ा-थोड़ा नजर आ रहा है कु --

ऐसा लग रहा है घर में अंदर ही पूल बनाया गया बहुत बड़ा--

बहुत प्यारे गमले लगाए गए हैं जिनमें छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं--

ये आप देख सकते हैं काफी बड़ी दुकान है जिसमें कुर्सियां हैं।

और साथ ही में आप देख सकते हैं डबल बेड है डबल बेड पे --

ए_के फिटनेस गेम कम्पटीशन रखा है।

लेसन के कट्टे हुवे और प्याज की कट्टियां उ आटे की कट्टियां उ --

रोड पे काफी सारे गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है।

इसमें आप देख सकते हो काफी सारा पानी भी भरा हुआ ।

ट्रेन की पटरी निकली हुई है पुल बना हुआ है ट्रेन की पटरी वाल --

काफी सुंदर स्कूल प्रोग्राम चल रहा है जो कि छोटी-छोटी बच्चियां डांस कर रही ।

इसमें आप देख सकते हैं काफी सारे मोबाइल इयरफोन ब्लूटूथ वगैरा रखे हुए--

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है। जिसमें आप अंदर जाकर देख सकते है।

और नीचे ही काफी सारा सामान रखा हुआ जैसे की--

और काफी छोटे-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।